कपड़ो की दुकान जिस पे रंग-बिरंगे कपड़े शर्ट पेंट जिन्स रखे हैं पंखा काउंटर हैंगर पे कपड़े टंगे हैं।